उसके बगल में बहुत सारे बालू रखे हुए हैं।

एक और व्यक्ति है एक बच्चे को बैठा रहा है।

बगल में हरी हरी पेड़ पौधे हैं।

बोड में कुछ चार्जर लगाए हुए हैं।

नदी में बहता पानी है।

स्कूल है स्कूल का गेट है बहुत बड़ा रेड कलर का पेंट है।

एक झंडा फहराने वाला व्यक्ति खड़ा है उसके बगल में भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

के बगल मे बहोत सारा बाइक खड़ा हुआ है।

शोरूम है शोरूम के उपर उम बजाज कंपनी ब्ल्यू बोर्ड लगा हुआ है।

और एक दीवार खड़ा किया हुआ है वो है रेड कलर और सामने उम्म बोर्ड लगा--

एक व्यक्ति है गेट के सामने खड़ा हुआ है उसका चेहरा दिख नहीं रहा है उसके बगल में नारियल का पेड़ लगाया हुआ है।

रेड येलो कलर म बोर्ड है।

बहुत सारा जिम का सामान है।

और उसमें अम कंप्यूटर सेंटर भी है।

प्रज्ञा केंद्र में पेनकार्ड पासपोर्ट रंगीन फोटो ड्राइवरी लाइसेंस बिजली बिल रेलवे टिकट वगैर वगैर चीज बनता है।